और रे रेड और ब्लू की लाइनिंग बनी हुई है उसमे आगे से उसमें अ पीछे उसके पेड़ पौधे है हरियाली है थोड़ी कच्ची सड़क भी है साइड से।

बड़ा पाइप डला हुआ है और झरने का पानी गहरा होता हुआ नीचे को तरफ ढरक रहा है।